यहां पर एक ट्रिप की जगह दिखाई दे रही है।

शिमला लक्कड़ बाज़ार में स्थित है। इसके बाहर एक हरे कलर का डस्टबिन है इसके अंदर आदमी गए --

यहां पर फूल का गुलदस्ता है।

और यहाँ पर हम बहोत बरी गए हुए हैं।

यहां पर बहोत अच्छे लोग रहते हैं यहां पर मैं भी गया हुआ हूं और ये बहुत अच्छी जगह है यहां पर पहाड़ दिखाई दे रहे है।